एक शॉप है स्वीट शॉप हैं जहाँ पे वाइट कलर के अंअंअं रसगुल्ले रखे हुए हैं।

स्वीट्स रखी हुई है एक कंटेनर मे स्वीट्स है।

उम्म बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जोकि पत्ते झड़े हुए हैं आ आ आधे पत्ते लगे हुए हैं।

एक कअ कॉलोनी हैं जहाँ पे बड़े बड़े टावर खड़े हुए हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं बहुत सारी लकडीये पड़ी हैं।

पूजा पाठ कर रही है बहुत सी महिलाएँ पूजा पाठ कर रही है बहुत सी बहुत से पण्डित पूजा करा रहे हैं।

गेट लगा हुआ है वाइट कलर का येलो कलर के बैनर बने हुए हैं।

एक कपड़े की शॉप है यहां पे तीन तीन ब्लाउज टंगे हुए हैं एक साड़ी पहने हुए है एक पुतला।

एम एम टैल पत्थर लगे हुए हैं बहुत सारे पंअंअंअं तीन चार पंखे लगे हुए हैं ग्रीन कलर की लाइट जल री एै।

एक रोड है जहां पे बहोत सारे हरे भरे पेड़ है बहोत सारी बिल्डिंग है।

एक शॉप है जहां पे वह सारे कंटेनर के अंदर--

एक स्कूल है बहोत बड़ा स्कूल है बहोत ही बड़े बड़े अं क्लास रूम है।

बहुत ही काफी बड़ा स्कूल है काफी हरियाली है काफी पेड़ पौधे हैं।

दो अम दो बच्चे हैं दो बच्चे हैं जो उनकी उम्म प्रोग्राम कर रही है।

एंड जो की पुल है पुल के नीचे झील बेह रही है एक पुल के ऊपर--

कुछ लेडिस कुछ जेंट्स है जहां पे एक स्टेज है स्टेज के ऊपर एक जेंट्स खड़ा हुआ है।

बाइक पे एक चैंस आ रहा है काफी बड़े बड़ी बिल्डिंग हैं काफी बड़ी बड़ी शॉप है।

घने पेड़ खड़े हुए हैं उम एक गाढ़ है जोकि खड़ा हुआ है बहुत सारे उम पेड़ हैं।

रोड के बराबर में एक नीला बोर्ड लगा हुआ है एक साइड में और बोर्ड लगा हुआ है।

ऐ जोकि एक छोटा सा चँअनन्न सूरज नजर आ रहा है।

एक रोड हे रोड पे दो तीन बैनर लगे हुए हैं।

दो तीन पेड़ खड़े हुए हैं बहुत ही सुंदर पेड़ हैं हरे भरे पेड़ हैं।

एक सेटर ल अम्म सेटर लग रहा है एक दो तीन बॉल लग रहे हैं एक अं कंटेनर है।